ये एक स्कूल का चित्र है जिसमें दो अध्यापिका वे एक अध्यापक खड़ा है।

अध्यापक सर ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी है और दोनों एक अध्यापिका ने येलो और एक ने रेड कलर की साड़ी पहनी है सभी बच्चे कुछ ना कुछ--

ये एक योगा क्लास का चित्र है जिसमें बहुत सारे बच्चे--

ये एक लाइब्रेरी का चित्र है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े काले रंग के रैक पड़े हैं।

पंखे भी लगे हुए हैं इसकी दीवारों का रंग पीला है।